और यहाँ पर एक वॉचमैन का घर भी नज़त आ रहा है।

जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर एक कोलकाता फ्लावर डेकोरेशन का दुकान नज़र आ रहा है।

ये यहाँ पर हम देख रहै हैं कि चावल शक्कर और इत्यादि चीजे यहाँ उपलब्ध है।

और कुछ लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहै हैं और कुछ खरीरदार भी दिखाई दे रहै हैं।

लेक में छोटे-छोटे बोट नज़र आ रहे हैं।

और इस लेक में कुछ ये प्राणी भी नज़र आ रहै हैं जो कि इस लेक का आनंद उठा रहै हैं।

लेक का पानी बहोत ज्यादा गहरा नज़र आ रहा है।

शतुरमुर्ग अंडे भी देते है और ये बहुत ही ऊँचे --

जोकि राजा- महाराजाओं के जमाने में बनाया करते थे --